जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे--

और आस पास दुकानें भी हैं यह फोटो रात का है और बहोत ही सुंदर--

जैसा कि हम इस पिक्चर में देख--

कि हमें इस पिक्चर में एक--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

जैसा की हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं।

कि हमें इस पिक्चर के अंदर एक सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा--